ऊपर तार की लाइन गई है। उसके ऊपर एक व्हाइट आसमान जैसा दिख रहा है। उसके ऊपर एक और टीन का शेड डाला हुआ है जो की उसके ऊपर से जाता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे ।

जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे की एक जंगल जैसा दिख रहा है यहाँ पे पौधे है बहोत बड़े-बड़े पौधे है यहाँ पे जंगली जानवर है जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ जिराफ़ जैसे है जिसकी जो लाइनिंग है जिसमें ब्लैक एंड वाइट पट्टी की धारी है।

पीछे एक पाइप दिखाई दे रहा है पीछे एक और नीले कलर का यहाँ पे फव्वारा जैसा दिखाई दे रहा है बहुत ही सुन्दर दिखाई दे रहा है जिसको हम देख पा रहे हैं|

मैदान में खेल रहे है। कुछ बचे बैठे हुए है कुछ बच्चे खड़े हुए है ये एक मैदान हे बोहोत बड़ा जंगल टाइप का दिखाइ दे रहा है।

पांच लोग चेयर में बैठे हैं उसके पीछे जो अंबेडकर जी अ प्रतिमा लगी हुई है यहाँ पे चेयर में कुछ लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं मीटिंग चल रही है।

राजकोट में चेयर राखी हुई हैं और स्टैंड बना हुआ जो की खली दिखाई दे रहा है उसके बाजु में एक बोतल का दिखाई दे रहा है पीछे वहा एक लड़का अपना फोटो खिंच रहा हैं।